और यहां पे बास्केटबॉल के लिए जो रिंग बना है वो बहोत ही अच्छा रिंग है और ये स् लगता है किसी गा स्कूल के गार्डन का है।